कुछ लोग यहां से सब्जियां छाठ भी रहे हैं।

जहां पर फोटोकॉपी की जाती है।

छत पर दो से तीन काले रंग के पंखे भी नजर आ रहे हैं।

इस फोटो के अंदर एक काले रंग की कार नजर आ रही है यह देखने में काफी महंगी और बहुत सुंदर लग रही है।

इस फोटो के अंदर एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा--

जो की बनी हुई है सिल्वर और लाल रंग की और पीछे की तरफ गोल्डन कलर की कारीगरी की गई है।

जिससे इस एरिया में रोशनी आ रही है।